है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है ये घर में हमें गेट भी दिखाई दे रहा है।

यहा पर हमें एक सामने बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है इसमें लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ऊपर लिखा हुआ है राजकीय पौलोए --

उत्तरकाशी ये कोई पोलटेक्निक कॉलेज की पिक है जिसकी दीवाल एलो कलर से पेंट की गयी है सामने में भी एक बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है।

वो पाटे हुए दिख रही है और पत्थर म बहोत प्रकार के हैं कोई छोटे हैं कुछ बड़े हैं नीचे एक वो गुफा बनाई गई है गुफा में हमें कुछ अँधेरा भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमें अ-एक बहोत बड़ा पुल दिखाई दे रहा है अ-पुल के नीचे में बहोत सारा पानी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमे एक टेबल रखी हुई दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की है और इसमें बहौत सारी बोटले रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर हमें एक तम्बू तंगा हुआ दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है और हमें एकअ--अ ये रस्सियाे से बंधा हुआ--

यह पर हमें तम्बू टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं जो अ चार-पांच हैं।

यहाँ पर हमें सामने एक रोड दिख रहा है रोड पर एक कार खड़ी दिख रही --